यहाँ पर दुकाने रखी हुई दिखाई दे रही यहाँ पर जीपे रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे है यहाँ पर आदमी सेल्फ़ी लेते हुए दिखाई दे रहे है।

वहाँ पर मुझे बिल्डिंगे बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे पेड़ भी दिखाई-- यहाँ पर मुझे आ-द खिलाड़ी भी दिखाई दे रहे है बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दे रहे है कुछ खड़े हुए भी दिखाई दे रहे है।